यह एक किराना स्टोर का फोटो है।

सामने कुछ टीन सी भी घिरी हुई है।

सामने टेबल पर की किताबें धरी हुई है।

गुलाबी हरि और पीली लाइट है।

बगल में गेट है पेड़ है।

और रेलिंग सी रही है सामने खंभा लगा हुआ है सोलर ऊर्जा का।

सामने वाला थ्री डी है।

वहां पर एक खंभा है।

यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है चेक बु शर्ट में जिसने एक टोपी पैरी पैरी पहन रखी है।

दो ऊपर दो तीन बर्तन लगे हुए हैं।